और यहां पे ऊपर नीचे शेल्फ है और यहां पे ऊपर जाने के लिए--

यहां पे बहोत सारे लोग है। दुकान के अंदर बहोत सारी--

यहां पे ये फॉरेस्ट को आये हुए लोग है और यहां पे--

ऊपर लगाये गये हैं पर्पल ओरेंज वाइट कलर और यहाँ पे ये बच्चे--

बड़ा सा डैम का पानी जमा हो रहा है और बाजू रास्ता भी आने जाने के लिए--

यहां पे कल्ची है और छोटे छोटे गिलासां भी है।

यहां पानी का पाइप भी है और इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे है।

यहां पे फसल काटी गई है यहां पे पर्दे मारे गए हैं और लाइट के खंभे--

और पेन पेंसिला सभी रखे हुए हैं यहां पे बैठने के लिए टेबल है।

पेड़ लगाए गए पत्ते भी बाहर यहां पे एक लेडिस है जेंट्स बैग भी--

डब्बे भी तो उसका डब्बा भी रखा हुआ है यहां पे पीने के पिंक कलर का बॉटलिया है गिलास है।

नीलू आर्ट फूल का चार्ट लगाया गया है बाहेर--